यहां सभी लोग योगा कर रहे हैं।

और उनके चेहरे पे एक हल्की हल्की मुस्कान है।

इस पिक्चर में एक कार है सफेद रंग की।

एक छोटे एक टेबल है जिसपे पिंक कलर का पर्दा है एक कवर डला हुआ है चेयर रखी है।

जिसमें जो इंडिगो लिखा है और एक यहां पे एक व्यक्ति अपनी तस्वीर ले खींचा रहे हैं।

पौधे है बड़े बड़े बड़े पौधे हैं।

यहाॅं एक व्यक्ति चाय पी रहे हैं ये आर_के कॉफी स्टॉल के नाम से बॅनर लगा हैं।

साथ में दो कंटेनर रखें है बिस्किट मठ्ठी के बोतल्स रखी हैं और एक दो लोग बैठे हुए हैं।

इसमें एक नीचे लेटने वाला है एक ऊपर अपर ।

यहां शीशे का रैक बना हुआ है और नीचे--

यहां सामने हरे रंग की बिल्डिंग है।

कुछ गुरु गुरुजनों के फोटो रखी हैं।

और साथ में पत्थर की लाल पत्थर की दीवार ऐसी है।

तीन स्टैच्यू बैठे हुए है और छूट जैसे ढोलक--

सरकाने वाला और यहां पे एक बाइक खड़ी है।

और यहां पे एक लेडिज पहाड़ की पत्थरों के नीचे झुकी हुई है।

ये खुला ग्राउंड है और यहां पे हरी हरी घास आ रही है।

और यहाँ पे लाल रंग के कट्टे रखे हुए है और यहाँ पे कुछ खुला हुआ सामान भी चावल का --

जहां पे आलू है प्याज है कुछ बर्तन भी रखे केले भी रखें तस्ले भी रखे तराजू है।

ये पिक्चर जिम का है यें जिम के मशीन दिखा रखी है।

और ऊपर बैलून्स गुब्बारे लगे है लाल रंग के पीले रंग के सफेद रंग के बैलून्स लगे हुए है।

और एक व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ में गिटार है।

एक व्यक्ति खड़े हो के म्यूजिक प्ले कर रहा है साथ में डॉल --

और केक्स हैं आइसक्रीम हैं और यहां साइड में--

यहां च लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं।

तीन लेडिज है जोकि पानी के अंदर खड़ी हुई है।

पीछे से कार भी आ रही है साइडों में दुकान है दोनों साइड में।